इस दृश्य में हमें यहा पर एक कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है जहाँ हमें एक डमी दिखाई दे रहा है जिसमें--

यहाँ पर एक व्यक्ति एक जाम लेकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है अतः यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

के अलग-अलग उसमें रखे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ अगरबत्ती के कुछ मैगी के --